सुंदर लग रहा है और पीछे मुझे एक टावर दिखाई दे रहा है और आजू-बाजू में थोड़ी हरियाली--

और यहाँ पर मुझे एक पोस्टर नज़र आ रहा है जिस पर एक आदमी बना हुआ है और यहाँ पर मुझे आगें भी एक पोस्टर बना हुआ दिख--